जैसे माता रानी है यहाँ पर जो रमायल बोलते है की क्या बोलते है वो है शेर का चित्र बना है और ये हनुमान है इधर साइड में --

--दो ठो है एक ठो रेड कलर में और नीला कलर व्हाइट कलर में एक ठो है और एक ठो चॉकलेटी कलर व्हाइट कलर में है उसमें चेरी भी है दोनों में चेरी है मोमबत्ती भी है।

गुलदस्ता है अ और गुलदस्ता रखने वाले है और टेबल है।

और बहुत ही अच्छा गुलदस्ता है घर में रखा गया है हम लोग को बेचते है और बहुत ही अच्छा घर है और यहाँ टेबल रखाया गया है बहुत ही अच्छा घर मतलब कुछ बहुत सारा चीज रखाया है।

हेलो गाइस ये हेलिकॉप्टर है यहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर है लगता है दो तीन चार ठो है ये उड़ान ले चुकी है।